इस होटल में उस होटल के मुकाबले कुछ काम सजावट है। इसमें कुर्स कुर्सियाँ कुर्सी भी इतनी वी.आई.पी. नहीं है जितनी उसमें थीं फिर भी बढ़िया है बेहतर है।

इसको प्यास बहुत तेज लगी थी। पानी पी रिहा है।

काफी सुंदर मूर्ति बनी हुई है।